यहां पे है बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

कंपाउंड मारा गया है कंपाउंड के अंदर बहुत सारे--

जो यहां पे काम में आते है और यहां पे साइड में --

खांचा है जो यहां पे नटबॉल्ट को बना सके--

और यहां पे है सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए और यहां पे पेड़ है बहुत ऊंचे ऊंचे--

और यहां पे साइड में है डिपो है।

बड़ा सा खे जंगल नजर आ रहा है जो यहां पे--

दीवार है यहां पे वाइट कलर की और यहां पे है।

यहां पे बहोत बड़ा ऊंचा यहां पे पहाड़ नजर आ रहा है।

यहां पे पेड़ है बहुत बड़े-बड़े और यहां पे--

धुआं नजर आ रहा है जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक घर नजर आ रहा है जो यहां पे--

फ्रिज है फ्रिज के ऊपर ग्लासेस रखे गए हैं।

यहां पे है कपड़ों की दुकान जो यहां पे कपड़े हैं--

एडस भी है जींस है जो अलग-अलग कंपनी के हैं और यहां पे एक टेबल है टेबल --